जो ब्राउन कलर के एक भैया दिख रहा है मुझे वाइट कलर का टी शर्ट और नीचे पेन्ट पहने हैं ब्लैक कलर का --

ऊपर क्लाउड है वाइट कलर का क्लाउड है ऊपर आसमान--

जहां से वहां कनेक्शन है।

खम्बा है और ये नेट ग्रीन कलर की लगी हुई है नेट वाली जा जाली वाली गेट है।

यहाँ पे एक मैन खड़ा हुआ है सामने --